यह एक कमरा है कमरे में एक टी_वी है टी_वी --

ऊँगली में फुल पकड़े हुए एक शक्स दिख रहे है और जंगल में चारो तरफ--

या अ डब्बे में कुछ वगेरा वगेरा सामान रखा हुआ है।

यह एक फंक्शन हो रहा है फंक्शन में कुछ लड़के लड़किया जो है अ अलग अलग कपडे पहन कर --

बास का लकड़ी लगा हुआ है और ऊपर से--

शाम का वक्त है पीछे साइड से सूर्या--